एक इमारत दिख रहा है इमारत बहुत सुंदर दिख रहा है।

आसमान सफेद दिख रहा है।

दुकान में बहुत लोग दिख रहा है सामने बहुत रखा है।

इस तस्वीर में बहुत बच्चा दिख रहा है।

एक टेबल दिख रहा है टेबल पे सब बच्चा बैठा दिख रहा है।

एक शीशे का गेट दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक जिम दिख रहा है जिम में बहुत सामान दिख रहा है एक ट्रेडमिल दिख रहा है।

एक आदमी दिख रहा है आदमी खड़ा दिख रहा है आदमी धोती और टी-शर्ट पहना है यह फूलों का दुकान है।

पीछे एक और गाड़ी दिख रहा है।